दो छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं। काफी सभी यहाँ आदमी भी हैं। लेडीजे भी हैं।

बहोत ही खूबसूरत है। बोर्ड पर देखो एक सा बना हुआ है।